एक में लिखा हुआ है रेस्टोरेंट कम कैफे और दूसरा में लिखा हुआ है इको ऑफ अरुणाचल।

मुझे यहां एक वॉल दिख रहा है जहां बहोत सुंदर सा ड्राइंग कर के है।

एक लड़का एयरफोन लगाया हुआ है।

के पीछे एक स्क्रीन लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ बी सीन बि हार्ड ।

मुझे यहां एक बहुत बड़ा सा झील दिख रहा है।

बहोत सारी चिड़िया उड़ के दिख रहा है।

एक वाइट कलर का कार है और दो ब्लैक ।

इसका आगे साइड में शीशा लगाया हुआ है।

मुझे यहां एक बच्चा दिख रहा है बाइसिकल चलाते हुए और उसका फेस ढका हुआ है।

चार लोग के फेस ढके हुए हैं और एक का ढका हुआ नहीं है।

इन बाइक को ढक के है प्लास्टिक से।

अंकल चिप्स पैकेट दिख रहा है और नो पार्किंग का बोर्ड भी दिख रहा है।

मुझे यहां एक रोड दिख रहा है।

फ़िल्टर दिख रहा है और ग्लास और एक बरन बड़ा सा बरांडा --

मुझे इस रूम में बहोत से डिब्बे दिख रहे है।